यह संगिनी परिधान चाणक्यपुरी कॉलोनी धार में स्थित है धन्यवाद।

इस टेबल के सामने दो चेयर रखी हुई है।

फंक्शन हॉल गार्डन दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में टेबल लगी हुई है जिसपे खाना रखा हुआ है।

इस चित्र में हमें चार व्यक्ति बातें करते हुए नजर आ रहे हैं।

कमरे के अंदर गोला आकार का एक बहुत ही सुंदर सीसा नजर आ रहा है।

इस चित्र में हमें एक मछली बाजार की दुकान नजर आ रही हैं।

इस चित्र में हमें एक बस पर चढ़ता हुआ व्यक्ति है।

कार का वर्क करते हुए दिखाई दे रहा है पास में एक नीली टोकरी है।

इस शूटिंग रूम के आस पास हमें कई लोग नजर आ रहे हैं।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

मैकेनिकल लैब का नंबर हैं वन जीरो नाइन ।

हरे कलर का बोर्ड दिखाई दे रहा है धन्यवाद।

शादी का डेकोरेशन बहुत ही सुंदर है।